सामने जो दृश्य हम देख रहे हैं यह एक बागीचा का दृश्य हैं एक सुन्दर बागीचा का जिसमे हम पत्ते पेड़ पोधे फुल पत्तियां देख रहे हैं। सीढ़ियाँ देख रहे हैं। यह गुलाब का झुण्ड हैं जो हम आगे में देख रहे हैं।

सामने जो हम एक तस्वीर देख रहे हैं होटल की वो होटल मनुकामल का होटल है | मनोकमल का होटल है या रेस्टुरेंट है ।

और योग भी कर रहे हैं साथ में मैदान में ट्रेनर है और बच्चे हैं जो हम देख पा रहे हैं। मैदान काफी बड़ा हैं और मैदान के उस तरफ कई बिल्डिंग और पेड़ --

हमारे सामने जो हम दुकान की तस्वीर देख रहे है ये एक कैफै का दुकान है ये नेट कैफै का दुकान है और एक साइबर सेंटर हम बोल सकते हैं।

क्योकि यहाँं बहुत सारे कंप्युटर हम देख रहे हैं और सब बंद पड़े हैं ये दुकान अभी बंद है और इस दुकान का नाम ए.पी.टी है जो बोर्ड सामने हम देख रहे --

सामने एक बिल्डिंग है। यह बिल्डिंग दो तल्ले की बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग को पीले रंग से रंगा गया है और उसके गुम्बज को लाल रंग से रंगा गया है। यह एक स्कूल है।

हमारे सामने जो तस्वीर हम देख रहे है। यह एक स्टेडियम का तस्वीर है। यह स्टेडियम काफी बड़ा जगह और काफी बड़ी एरिया में फैला हुआ स्टेडियम है।